सामने एक कांच की दीवार दिख रही है।

यह एक मेट्रो स्टेशन का प्रवेश द्वार है।

एक व्यक्ति नीचे बैठा हुआ है।

सामने मेज पर किताबों के बड़े-बड़े ढेर रखे हैं।

चारों ओर क्यारी की सीमाएं पत्थरों या लकड़ी से बनी है।

यह एक छोटा रेस्टोरेंट या कैफे हैं।